शाद चढ़ा हुआ है और दरख़्त लगे हुए हैं कुछ गमले हैं और आगे ग्रिल लगी हुई है ।

इस तस्वीर में एक ज्वैलरी शॉप का मंजर दिखाया हुआ है जहां के कस्टमर आए हैं और ज्वैलरी को देख रहे हैं ।

और तीसरा स्किन चौथा ग्रे फिर ऐसे ही मुख्तलिफ रंगों के परदे लगे हुए हैं डिस्प्ले पे ।

वहां पे कुछ दरख्त लगे हुए हैं और एक लड़का है जिसने पीले रंग की शर्ट पहनी हुई है जींस की --

पैंट पहनी हुई है और उस तरीखी मुकाम की तरफ बढ़ रहा है और सीढ़ियां बनी हुई हैं।

सेकंड रेक पे हेंड एण्ड शोल्डर की बहुत सी बोतलें पड़ी हुई हैं।

उन्होंने सफेद रंग की फ्रॉकें और पीले रंग का ऊपर से जैकेट्स पहनी हुई हैं और इबादत में मसरूफ हैं ।

में इन्मे खूबसूरत सी पीली रोशनी की हुई है काउंटर है काउंटर में बहौत से लोग --

हरियाली ही हरियाली है गमले लगे हुए हैं नीले और सफेद रंग का एक कूलर पड़ा हुआ है उसके पा ।

इस तस्वीर में किसी बवर्ची खाने का मंजर दिखाई दे रहा है जहां के बिरयानी की प्लेट पड़ी हुई ।